और तीन चेयर दिखाई दे रही है।

एक बाइक दिखाई दे रहा है और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ कु खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

और बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ योगा मैट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक फ्लैग दिखाइ दे रहा है और एक सूरज दिखाई दे रहा है।

आसमान नीला दिखाई दे रहा है एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लड़कियां डांस करते हुए दिखाई दे रही है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

यहां पर बहोत सी बसेस दिखाई दे रही है।

जो कि कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ पढ़ाई करते हुएं दिख रहे हैं।